एक सड़क है सड़क के किनारे एक घर है घर काफी पुराना है।

बोहोत दूर में एक फैक्ट्री दिख रही है जो के बोहोत बड़ी है और बोहोत बड़ा है और बोहत छोटा भी और कुछ घर हैं बगल बगल में ।